रेस्टोरेंट के दिवाला नीला रंग का है।

कोने में मनुष्य जैसे भी कोई खड़े हैं।

बहुत सारे पेड़ है आना जाना के लिए एक रास्ता भी है और आधी दीवार है।

दुकान के दीवार काला रंग का है।

हवाई जहाज के आगे भी कुछ पौधे हैं और पत्थर--

ग्रीन कलर के चीज के ऊपर रखे हैं।

पीछे में काला रंग में भी कुछ दिख रहा है काला रंग के बोर्ड में सेंडर लिखा हुआ है।

कमरे के दीवार पर पीला और काला रंग से डिजाइन बने है।

ऊपर सेल्स में बिस्किट बोतल और सामान रखें--

इस तस्वीर में एक मनुष्य खड़ा है मनुष्य के पीछे स्टार सेप के अंदर मदर मैरी की मूर्ति है।